ये एक वेक्टस शोरूम दिखाई दे रहा है यहां पर मुझे पाइप टैंकी--

और बिजली का भी उचित परबंध है।

अलग भाषा में लिखा हुआ हैं ये बच्चे बहुत सुंदर दिख रहे हैं ।

दिखाई दे रही हैं और ये बड़ी बहुत बड़ी इमारत हैं बिजली का भी उचित प्रबंध हैं।